ये एक मूवी हॉल है सामने एगो अअ पीला पर्दा लगा हुआ है सफेद पर्दा है।

बीच में कोयला जल रहा है आग जल रही है।

सामने गेट है बगल में नीला घर है बहुत सारी लाइटिंग जल रही हैं।

और नीले अं अ पत्ते हरे पत्ते हैं।

और यहां पे लोग जंगल में घूमने आए शिकार करने आएं जंगल में बहोत सारे जानवर है।

यहीं पे बहुत सारे लोग आधार कार्ड अह रिलेटेड काम कराने आते हैं।

ये हॉल है हॉल के अंदर बहोत सारे वाशिंग मशीन --

बहोत सारे आदमी है हरे जैकेट पेहने हुए एक लेडिज खड़ी है।

कीड़े मकोड़े हैं पंछी हैं पेड़ पौधे हैं।

इस दुकान में नीले कलर का शटर है न्यू टाटा मोटर्स पार्ट्स लिखा हुआ है।

और दीवार बनी हुई है यहां पे लोग घूम रहे जिम कर रहे--